यहां पर मुझे एक सामने आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है जो पॉकेट में हाथ डाला हुआ है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है। जिसमें बहुत सारे राउंड शेप में पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है।

यहां पर मुझे बहोत सारे बच्चे और बच्चियां दिखाई दे रहे हैं जो कुछ बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हैं।

इसमें बहोत सारे छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है और कुछ पत्थर के टेबल बनाए हुए हैं जो वाइट कलर के हैं।

अ कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है और कुछ कुर्सी दिखाई दे रहे है जो ग्रे कलर के है।

यहां पर मुझे एक ज्वेलरी का दुकान दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

और एक बाल्टी दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और ग्रीन कलर का है।

यहां पर मुझे एक दीवार दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है जिसमें लाइन बनी हुई है जो वाइट कलर की है और ब्लैक कलर की है जिसके ऊपर दो बैनर दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू कलर के हैं जिसमें सिल्वर कलर से कुछ लिखा हुआ है और एक ग्रीन कलर का है जिसमें ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे है जो मिट्टी कलर के है जिसमें कुछ पौधे लगे है जो ग्रीन कलर के है।

और कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है और एक टेबल दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक दीवार का बैठने वाला दिखाई दे रहा है जो सीमेंट कलर का है।

ओ बहोत सारे कुर्सियां दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है और ग्रीन कलर की है।